कोयला आया हुआ है और वो कोयला को खाली कर रहे है देख सकते है यहाँ अभी भी है यह कभी भी बहुत सारे टिकिट काउंटर मे घुसे हुए हैं देने के लिए--